रोड दिख रहा है रोड पर एक कार जाती हुई दिख रही है कार का कलर वाइट कलर ए और काफी सारी कार उधर से भी आती हुई दिख रही है वाइट कलर की और यहाँ पर काफी सारे खम्बे लगे हुए है बिजली के काफी सारे तार दिख रहे --

एक पेड़ दिख रहा है हरे कलर का और काफी सारे और भी पेड़ दिख रहे हैं हरे कलर के और कुछ पर्सन बैठे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर एक होटल दिख रहा हैं ।